कसम से मैं क्या बताऊ अगर पता चल जाता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता घुमाने -फिराने मजा आजाता यार मेरी गर्लफ्रेंड भी कहती कहाँ लाये हो--

अरे वाह! कितना शानदार जगह दिख रहा है यार पहाड़ी इलाका है सामने सूखा- सूखा पहाड़ी इलाका है लग रहा है गिट्टी -उट्टी निकलता हैं।

सायद (शायद) मेरे आँख के धोका यार किराना दुकान यार ये पेप्सी उपसि पूरा लोक रहा यार ये।

अरे वाह इतना सुंदर मार्केट लगा हुआ है केला टमाटर -वमाटर अंगूर -उगूर सब बिक ओ रहा है पीला तिरपाल लगा हुआ है शटर दिख रहा है तार ओर बिजली विजली वाला दिख रहा है।

किताब है दुनियाभर के किताब है इतना किताब है की गिनने से नहीं गिनायेगा ये सब किताब कुर्सी भी गिनने से नहीं गिनायेगा टेबल गिना जायेगा ऐसा कोई बात नहीं लेकिन टाइम रे --

कितना मस्त है ना टेबुल वोबुल उनमें खेत में काउंटर है यार ऐसा मस्त दुकान है बिलकुल मेरे--

और उधर पेड़ -पौधा भी है मस्त जगह है यार अइसन जगह पे मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन देखा नहीं हूँ यार अभी दुनिया अभी छोटा अभी मैं--